नीचे कुर्सियां भी पड़ी हैं।

बच्चे भी हुसैन जो व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए हैं।

स्टार्टिंग में ही एक जाल बना हुआ है।

स्पीकर में लगा हुआ ए_सी चल रही है।

कलर के हैं और लाल कलर के भी हैं गुलाबी कलर के भी हैं नीले कलर के भी हैं और--

पास में बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है।

इस चित्र में हमें तीन कार दिख रही हैं।